यहाँ पे एक बस खड़ा है। जिस बस का रंग पीला अर्थात गोल्डन कलर का है। यह बस नयी-नयी है।